inserting images hyperlinks & bookmarks पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि निम्न कैसे प्रविष्ट करें:
एक image file
hyperlink
writer document में bookmark
यह tutorial
हम लिबर ऑफिस writer में image file कैसे प्रविष्ट करें यहां से सीखना शुरू करेंगे
resume odt file खोलें जिसे हमने पहले बनाया है
यह फ़ाइल और एक image फ़ाइल आपको इस tutorial पेज पर code files link में प्रदान की गई है कृपया file डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
एक copy बनाएं और फिर अभ्यास के लिए उनका उपयोग करें
मैं यहाँ दाईं ओर एक image प्रविष्ट करना चाहूंगी
जैसा कि पहले कहा गया है यह image code files link में प्रदान की गई है
mothers occupation housewife line पर जाएं और दो बार enter दबाएं
अब standard toolbar में insert image icon पर click करें
insert image dialog box प्रदर्शित होता है
उस स्थान पर जाएं जहां आपकी file सेव है
मैंने file को मेरे desktop पर extracted और सेव किया है
मैं इस पर क्लिक करके image file चुनूंगी
और फिर open दाईं ओर दिए गए open button पर click करें
हमारे document में image प्रविष्ट हो गया है
हम resume document के शीर्ष दाएं कोने में fit करने के लिए इस image का आकार बदल सकते हैं
image चुनें image पर हम 8 handles देख सकते हैं
mouse का उपयोग करके handles के किसी भी side पर click करें
फिर image के आकार को बढ़ाने या घटाने के लिए खींचें
ctrl + z कीज दो बार दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें
हम corner handles का उपयोग करके दोनों आयामों को scale भी कर सकते हैं
जब हम ऐसा करते हैं तो अनुपात बनाए रखा जाता है
इसी तरह mouse क्लिक और खींच कर image का आकार बदलें
आकार बदलने के बाद image पर click करें और इसे document के ऊपरी दाएं कोने पर खींचें
हम menu bar में insert menu पर क्लिक करके और फिर image विकल्प पर क्लिक करके भी
images प्रविष्ट कर सकते हैं
अब हम writer में hyperlink बनाना सीखेंगे
documents में hyperlink शब्द या वाक्य होते हैं जिन्हें clicked किया जा सकता है
उन्हें क्लिक करने पर हम एक नए document या document के भीतर एक नए section में जाते हैं
इस file में hyperlink बनाने से पहले हम hyperlinked करने के लिए पहले एक नया document बनाते हैं
standard toolbar में new icon पर click करें
untitled 1 named एक नया writer document खुलता है
अब हम इस now document में शौक की एक सूची बनाएंगे
hobbies heading type करें और enter दबाएं
अब एक के बाद एक कुछ hobbies type करें जैसे
listening to music
playing table tennis और painting
फिर ctrl + s कीज एक साथ दबाकर इस file को सेव करें
फ़ाइल browser में मैं अपनी फ़ाइल को सेव करने के स्थान के रूप में desktop चुनूंगी
name field dialog box में name filename hobby type करेंगे
फिर ऊपरी दाईं ओर पर save button पर click करें
ऊपरी दाईं कोने पर स्थित x icon पर क्लिक करके इस hobby odt file को बंद करें
अब हम resume odt में hyperlink बनायेंगे जो इस document को पुनःप्रेषित करेगा
cursor को document में अंतिम line के अंत में रखें और दो बार enter दबाएं
hobbies शब्द type करें
अब hobbies शब्द के साथ cursor को खींचकर text का चयन करें
फिर menu bar में insert menu पर click करें और hyperlink विकल्प पर click करें
hyperlink dialog box खुलता है
बाईं ओर हम internet mail document और new document विकल्प देखते हैं
अन्य text document के लिए hyperlink बनाने के लिए document विकल्प पर click करें
यहां 2 sections हैं
tutorial progresses होते ही हम target in document विशेषता के बारे में जानेंगे
path field के दाईं ओर folder icon पर click करें
desktop चुनें
नीचे scroll करें और नए document hobby odt पर जाएं जिसे हमने बनाया है
double hobby odt file पर doubleclick करें
हम देखते हैं कि file के लिए path path field में प्रविष्ट हो गई है
निचले भाग पर पहले apply button और फिर close button पर click करें
हम देखते हैं कि hobbies text underlined हो गया है और नीले रंग का है
जिसका अर्थ है कि text अब hyperlink है
अब cursor hobbies शब्द पर रखें
फिर ctrl की और बायां mouse button एक साथ दबाएं
हम देखते हैं कि hobby odt file खुलती है
इस फ़ाइल को बंद करने के लिए ऊपरी दाएं कोने पर x icon पर click करें
अब सीखते हैं कि bookmarks कैसे प्रविष्ट करें
bookmark एक text है जो एक paragraph या text के भाग के अंदर एक विशेष स्थिति को चिह्नित करता है
bookmarks बड़े documents को पढ़ते समय उपयोगी होते हैं
यह हमें document में कुछ पेजों या paragraphs को चिह्नित करने और बाद में उस पर फिर से जाने में मदद करता है
मैं text ramesh चुनूंगी
फिर standard toolbar में insert bookmark icon पर click करें
bookmark dialog box खुलता है
text field bookmark 1 दर्शाता है
हम चाहे तो अपना स्वयं का customised name we सकते हैं
मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी
इस field के दाईं ओर insert button पर click करें
bookmark dialog box स्वतः ही बंद हो जाता है
मैं अब document में self employed नामक अन्य text चुनूंगी
फिर से standard toolbar में insert bookmark icon पर click करें
इस समय dialog box हमारे पिछले बनाए bookmark को नीचे सूची में दर्शाता है
text field bookmark 2 दर्शाता है फिर से मैं इसे डिफॉल्ट रूप में छोड़ दूंगी
फिर इस field के दाईं ओर insert button पर click करें
standard toolbar में insert bookmark पर click करें
इस समय dialog box 2 bookmarks दर्शाता है
किसी भी एक पर click करें और फिर dialog box के निचले भाग में go to button पर click करें
close button पर click करें
focus document में text के निर्दिष्ट भाग में स्थानांतरित हो जाता है
standard toolbar में insert bookmark पर click करें
अब अन्य bookmark पर click करें और और फिर डायलॉग बॉक्स के नीचे दिए गए go to बटन पर click करें
close button पर click करें
focus document में text के अन्य निर्दिष्ट भाग में स्थानांतरित हो जाता है
dialog box में अन्य buttons क्या करेंगे स्वतः अन्वेषण करें
इस तरह से हम writer document में bookmarks प्रविष्ट और उपयोग कर सकते हैं
resume odt file को सेव करने के लिए ctrl + s दबाएं
और फिर इसे and करने के लिए window के ऊपरी दाएं कोने पर x icon पर click करें
हमारे पास hyperlinks में अन्य विशेषता है जो target in document है
इससे पाठक को target document में एक विशिष्ट अनुभाग खोजने में मदद मिलेगी
hobby odt file खोलें
document के अंदर tennis शब्द चुनें
menu bar में insert menu पर click करें और bookmark चुनें
bookmark dialog box में bookmark1 के स्थान पर tennis type करें
अब दाईं ओर पर insert button पर click करें
इस file को सेव करें और फिर बंद करें
अब resume odt file को एक बार फिर से खोलें hobbies शब्द चुनें
menu bar में insert menu पर click करें और hyperlink चुनें
hyperlink dialog box खुलता है
दाईं ओर पर document पर click करें
path field में हम hobby odt file का पूर्ण path देखते हैं
target in document section में दाईं ओर circle icon पर click करें
target in document सूची box खुलता है
arrow पर क्लिक करके bookmarks का विस्तार करें और tennis bookmark चुनें
apply button और फिर close button पर click करें
hyperlink dialog box में target field में हम tennis text देखते हैं
हम देख सकते हैं कि hobby odt file का path url field में प्रविष्ट हो गया है
सबसे नीचे पहले apply button और फिर close button पर click करें
hobbies शब्द पर cursor रखें तथा ctrl की और बायां माउस बटन एक साथ दबाएं
ध्यान दें कि इस समय cursor hobby odt file में tennis शब्द के आगे है
महत्वपूर्ण विशेषता है जब target file बड़ी होती है और कई पेजों में रन होती है
x icon पर क्लिक करके hobby odt file बंद करें
resume odt पर वापस आएं
ctrl + s कीज दबाकर file सेव करें
फिर x icon पर क्लिक करके file बंद करें
इसी के साथ हम इस स्पोकन tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने राइटर डॉक्यूमेंट में निम्न प्रविष्ट करना सीखा:
नियतकार्य के रूप में
file में अपनी पसंद की image प्रविष्ट करें
www google com website खोलने के लिए hyperlink बनाएं जब आप file में image पर click करें
कम से कम 2 bookmarks प्रविष्ट करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद